ये यहाँ पर दीवार हो --

जैसे कहीं भी यह पार्किंग की तस्वीर है यहां पे बाइक स्कूटी और बुलेट और कारें खड़ी हैं।